कलर का ये लोग पैंट पहना हुआ एक इंसान जो ब्लैक कलर का उसमे बेल्ट लगा हुआ है और फोन भी रखा हुआ है उसके बगल वाला चश्मा पहना हुआ ब्लैक कलर यहाँ पे चश्मे--

दीवाल में सफ़ेद कलर का पेंट है नीचे साइड लाल कलर का पिछे साइड एक खिड़की है। खिड़की के बगल में एक दरवाजा है दरवाजा लकड़ी का है।

बारे लगी हुई है। जो लाल सफ़ेद और नीले कलर की उसमे उसके बिछ मे एक पोस्टर लगा हुआ है। उसमे पतांजली टेस्टी नमक ढाबा लिखा हुआ है।

पिछे साइड काफी सारे पेड़ पोधे लगे हुए है जो हरे-भरे है उसके सामने काफ़ी सारा दरवाज़ा लगा हुआ है जो लोहे की है उसके पीछे खिड़किया है।

एक रस्ता है रस्ता सीमेंट का है उसमे एक इंसान चल रहा है जो काले कलर का कोट पेहना हुआँ है और पेन्ट पेहना हुआँ है सामने से एक मकान है मकान सफ़ेद कलर का है।

सामने साइड एक गेट है गेटव से गेट लोहे है का इसमे सफ़ेद कलर का पैंट हुआ है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

पे काफी बड़ा मकान है मकान सफ़ेद कलर का उसमे एक ए.सी लगा हुआँ है उनका नीले कलर का है सामने से दो औरते है एक इन्सान है जो --

उसके पिछे डैम्प नीचे साइड सीमेंट का एक चलने वाला पाथ जिसमे खड़े हुए है वो--